पीछे साइड काफी सारे वायर जा रहे है जो करे-करेंट के है।

यहाँ पे एक पहाड़ है पहाड़ हरा-भरा है और काफी बड़ा है उसमें काफी छोटी साइज और बड़े साइज के पत्थर भी नीचे साइड एक उम एक बस है बस सफ़ेद कलर का है उसमें लाल कलर का पेंट है उसका क कांच क कांच लगा हुआ है।

साइड में एक इंसान खड़ा हुए जो काले कलर का पेंट और ऊपर शायद सफ़ेद पीला कलर का कुर्ता पहना हुआ बगल में एक बाइक है बाइक लाल कलर की उसका टायर काली कलर की उसके बगल में एक और बाइक है और उसके सामने एक हैलमेट रखा हुआ है।

उसके बगल में एक इन्सान चल रहा है जिसमें काफी सारा लाइट जल रहा है।

उसके ऊपर धुंधला दिखाई दे रहा है बगल में एक ओर पहाड़ है जो काफी छोटा सा है।

यहाँ पर एक मकान है मकान काफी बड़ा है मकान में पीले कलर से पैंट है इसमें खिड़कियाँ है खिड़कियाँ काँच की है सामने ए.सी. लगी हुआ है ए.सी. सफ़ेद कलर का है ऊपर साइड ये तीन मंज़िल का है नीचे की साइड एक कार खड़ा हुआ है कार सफ़ेद कलर का है उसके बगल मे काफी सारे बाइक्स खड़े हुये जोकि काले कलर के है।

बीच मे काफी सारा दिया रखा हुआ है जिसमे मोमबत्ती जल रहा है बीच मे कचरे टाइप रखे हुये हैं| आया पेड़ रात का महोल है पीछे सारे पेड़-पोधे लगे हुए है जो हरे-भरे हैं।